सामने एक बड़ा- सा गेट है सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे सामने जा रहा है।

दो धारीदार पट्टे बने उसपे सर के उपर एक टोपी लगाए चश्मा पहने सामने से आ रहा है।

और उसके आगे तीन लड़के बैठे है बगल में एक लड़की और दो लड़के बैठे है।

बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं सामने एक चॉकलेटी रंग की बिल्डिंग है।

जमीन पर लाल रंग की दो- तीन चटाईयाँ बिछी हैं।

और यह एक बहुत बड़ा बैनर या पोस्टर जैसा दिख रहा है।

पीछे दीवार गुलाबी रंग की है बड़े - बड़े लाइट जल रहे हैं ऊपर एक पंखा लटका है नीचे जमीन का रंग लाल है।

बगल की दीवाल काली दिख रही है सामने बिल्डिंग सफेद रंग की दिख रही है सफेद रंग के तीन चार पिलर दिख रहे है।